यह एक मेले की तस्वीर हैं जहा पर लोग खरीददारी करने के लिए आय हुए हैं और लोग अपने मन पसंद सामान ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं।

बैलून बिकुल साफ़ नज़र आ रहा है | यहाँ पैर हमें कई मात्रा में हमें टाइल्स भी दिखाई दे रही हैं